एक यह एक हिस्टॉरिकल मॉन्यूमेंट है यहां पिकनिक के लिए स्कूल के स्टूडेंट को लाया गया है जो एक गर्ल गर्ल्स स्कूल की बच्चियां --

यह बनारस के सारनाथ में बसा हुआ है और यहां बुद्ध की दो अलग-अलग प्रतिमाएं है एक पत्थर की बोहोत ऊंची प्रतिमा है तथा दूसरी --

ये विश्वनाथ कोरिडोर के अंदर बना हुआ भारत माता का मूर्ति है जिसके साथ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं और उसके पीछे भी एक भगवान शिव की ही मंदिर है।

यह एक छोटा सा थीम पार्क है। जिसमे छोटे छोटे झूले लगे हैं।

यह किसी मैरेज लॉन में जहां शादियां हो रही है | वहां की फोटो है।

यह भगवान शिव का एक मंदिर है। जिसके बाहर एक छोटा सा नंदी बना हुआ है जो भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग की और मुँह --

पुरी तरह की से नया बना हुआ है उसमे नीचे की ओर एक गार्ड नजर आ रहा है। एक व्यक्ति फोन चलाते हुए नजर आ रहा है। बाहर की और कुछ लाइटे जल रही हैं।